वो अपने टीचर को देखते हुए डांस स्टेप्स परफॉर्म कर रहे हैं या किसी इवेंट के लिए रिहर्सल कर रहे हैं।

और काले शूज पहने हुए है वो किसी पुराने किले के एंट्रेंस --

सामने के सीन में एक व्यक्ति जिम करता हुआ दिखाई दे रहा है जिम करने वाला व्यक्ति--

ब्लैक ट्राउजर्स पहने हुए हैं तथा रेड जैकेट पहने हुए हैं।

जिम के पिछली दीवार पे एक सेलर टीवी लगा है जो कि अभी बंद--

चित्र में राफ्टिंग स्पॉट को दिखाया जा रहा है जिसमें टूरिस्ट --

इस तरह के शाम को इस रावण को फूक दिया जाएगा रावण के क्षेत्र के पीछे एक बिल्डिंग है रावण के दस सिर हैं।

यहां ट्रेन एक इलेक्ट्रिक ट्रेन लग रही है तो इनके दोनों तरफ--